यह काफी सुन्दर शादी का मंच हैं। इसको काफी अच्छे से सजाया गया हैं शादी के लिए।

बासूरी का रियाज़ कर रहे है ये धुन बहुत अच्छी बना--

साथ मे ये बहुत ही सुन्दर गाना भी गा रहे हैं। ये बहोत ही अच्छा संगीत समारोह आयोजित किया गया --